यहां एक बाउंड्री में गेट लगा हुआ है जो की काले कलर का दिखाई दे रहा है।

झूले का कलर लाल तथा हरा दिखाई दे रहा है।

तिरंगा झंडा भी लगा हुआ है जो की सफेद नारंगी तथा हरे कलर का है तथा उसमें चक्र भी बना हुआ।

यह कोई पुरानी बिल्डिंग है सामने जो की ऑरेंज तथा सफेद कलर की दिखाई दे रही है।

यहां पे काफी सारे पेड़ भी लगे दिखाई दे रहे है तथा यहां दो बच्चे भी खड़े नजर आ रहे है।

लड़का काला तथा पीला कलर के कपड़े में तथा लड़की सफेद कपड़े में दिखाई दे रही है।

यहां काफी हरी भरी घासें दिखाई दे रही है।

तथा यहां कई सारी कुर्सियां भी रखी हुई हैं।

यहां कुछ महिलाएं भी जाती नजर आ रही है तथा टेंपो भी दिखाई दे रहे।